और अभी पूरी तरह बना नहीं है। गेट दिख रहा है ब्लू कलर का।

ये घूमने की एक जगह दिखाई दे रही है जहां पे हा--

मेरे को इसमें रेलवे स्टेशन दिख रहा है प्लेटफार्म दिख रहा है।